यहाँ हमें एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान शराब की दुकान है वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ दिख रहा है अंग्रेजी शराब दुकान।

और एक बस भी नजर आ रही है।

यहाँ हमें एक पहाड़ नज़र आ रहा है पहाड़ के साथ-साथ हमें एक झाड़ भी नज़र आ रहा है।

झरना नदी में जाता हुआ दिख रहा है।

यहां हमें एक दुकान का फोटो दिख रहा है।

और साइड में हमें एक लकड़े की अलमारियां भी नजर आ रही है।

कबाड़ के ऊपर व्हाइट कलर के पेपर से कुछ लिखा हुआ भी दिख रहा है ऊपर लाइट जलती हुई दिख रही है।

कुर्सियों पर लोग बैठे हुए दिख रहे हैं।

झाड़ लगे हुए दिख रहे हैं। पौधे नजर आ रहे हैं।

टेबल के बाहर लैब जांच नाम का एक बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है।

बहोत सारी टैबलेट रखी हुई दिख रही है।

कई लोग नीचे बैठे हुए दिख रहे हैं।

गार्डन के अंदर हमें घास नजर आ रही है।

गार्डन के अंदर बहोत सारी रखी हुई दिख रही है।

बिजली का खंभा और वायर नजर आ रहे है एक लड़का खड़ा हुआ है जो फोटो खिंचवा रहा है।

यहां हमें एक ढाबा दिख रहा है उस पर एक बोर्ड नजर आ रहा है।

घास और झाड़ भी नज़र आ रहे है।

घास और पौधे दिखाई दे रहे हैं।

ऑफिस का दरवाजा खुला हुआ है।

यहां हमें एक कार दिख रही है।

बिल्डिंग के ऊपर आकाशवाणी लिखा हुआ दिख रहा है।